शोरूम बाटे इतना बढियां-बढियां सुंदर-सुन्दर बेचाता कोट पेंट शेरवानी आदमी शादी-व्याह खातिर के खरीदताटे।

एहीजा दुगो आदमी बाला सं कितना निक-निक बाला सं।